यहाँ पर आसमान का कलर पर्पल ब्लू ग्रे दिखाई दे रहा है और कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे है यहाँ पर एक पार्क दिखाई दे रहा है।

शटर का कलर ब्लैक दिखाई दे रहा है और एक लेडीज और कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं रेड कलर की डोरी दिखाई दे रही --

यहां पर कई सारी लाइट दिखाई दे रही है और कई सारी छतरियां दिखाई दे रही है जिनका कलर रेड व्हाइट गोल्डन दिखाई दे रहा है।

एक हॉल दिखाई दे रहा है जिसकी दीवारो का कलर वाइट रेड और पर्पल दिखाई दे रहा है यहाँ पर कई सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं।

कई सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं और कई सारी लाइट दिखाई दे रही है यहाँ पर ब्लू कलर के बास्केट दिखाई दे रही है।

यह एक हॉल दिखाई दे रहा है जिसकी दिवालो का कलर वाइट ऑरेंज रेड पर्पल दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर दीवारों का कलर ऑरेंज ग्रीन दिखाई दे रहा है और खिड़कियों का कलर ब्लैक दिखाई दे रहा है।

यहां पर कुछ पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है जो ब्लैक दिखाई दे रहे है यहां पर कई सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे है जिन्होंने कई रंग के कपड़े पहने हुए है।

कपड़ो का कलर व्हाइट ब्लू और पिक दिखाई दे रहा है फर्श का कलर ब्लैक दिखाई दे रहा है।